यहां पर बहुत सारे लाइट्स भी हैं।

पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

यहां पर एक नदी है।

साइड में एक दुकान भी है।

यहां पर एक गाड़ी रखी है।

दो आदमी नजर आ रहे हैं।

इधर ऊपर लाइट जल रही है।

इधर टेबल के ऊपर कुछ पड़ा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर एक बैनर भी है।

यहां पर बहुत सारे बम्बूज हैं।

और कुछ सफेद सफेद कुछ चीजें से राउंडेड है।

यहां पर एक गाड़ी रखी है।

और साइड में टी_वी जैसा कुछ--

यहां पर दो तीन लोग हैं।

और औरत भी नजर आ रही हैं।

टेबुल टाइप का कुछ है।

कुछ नजर आ रहा है बिल्डिंग टाइप का।

यहां पर एक बोर्ड लगा है।

साइड में बहोत सारे लॉकेट्स रखे हैं और यहां पर नीचे बहोत सारे चीजें हैं।

इस साइड भी बहुत सारे लॉकेट हैं।

पहाड़ है बड़े बड़े पहाड़ है इस साइड एक फैक्ट्री एक बड़ा घर जैसा कुछ लग रहा है पीछे खंभा भी एक नजर आ रहा है।

साइड एक नारियल का पेड़ भी है।